अदर बुक्स भी है और सारी बुक्स रखी हुई है यहां पर कुछ आदमी और कुछ औरत है जो बुक्स देख रहे है।

सोफे रखे हुए हैं और कुछ लोहे की कुर्सियां भी रखी हुई हैं यहां पर --

कूटीयां खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इन की माला से डेकोरेशन की हुई है एक आदमी एक औरत फोटो लेते दिख रहे हैं।

एक पोस्टर लगा है जिसमें एक लड़की ने यल्लो कलर की शर्ट पहनी हुई दिखाई दे रहा है।

ये एक ग्रॉसरी स्टोर दिखाई दे रहा है जिसमें --

लाइटों की डेकोरेशन की हुई दिखाई दे रही है।

ये एक एच_डी_एफ_सी बैंक के ए_टी_एम की मशीन दिखाई दे रही है।

बाहर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लोग अंदर बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।

डेकोरेशन की दुकान की तस्वीर नजर आ रही है जहां पर बोहोत सारे--

टीचर है जो वाइट बोर्ड पर बच्चों को कुछ लिखकर समझाता हुआ नजर आ रहा है और कुछ बच्चे हैं जो --